छपार है और नीले कलर से और सफ़ेद कलर से पूता है और लाल कलर से कुछ लिखा हुआ है।

यहाँ पर एक स्कूल बना हुआ है औ वहाँ पे भगवान जी की फोटो लगी है और यहाँ पर रिक्शे खड़े हुए है और साइकिल इस --

पीले कलर की कुर्सी रखी है और काले और नीले गुब्ब्बारे लगे हुए हैं और एक सफ़ेद कलर की --

यहाँ पर एक राशन की दुकान है। वहां पर राशन लोड हो रहा है लोडर से। --

जहां पर बहोत ही सारी काली कलर कुर्सी रखी हुई हैं।

थाई कलर की टी शर्ट पहने हैं। नीला कलर का चड्डा पहने हैं। काला कलर का जूता पहने हैं। सफ़ेद कलर का रुमाल बांधे हैं और उसके ऊ --

सफ़ेद कलर से पुताई है एक खटिया रखी है वाहं पर एक बालटी रखी है यहाँ पे एक डोरी बंधी है और यहाँ पे एक पेड़ बना है।

और यहाँ पे ऑरेंज कलर की पीली कलर की बिल्डिंग बनी है। उसके आगे और बिल्डिंग बनी है और यहाँ पर एक लोडर खडी हुई --